और ऊपर की तरफ शेड लगा हुआ है टी शटर है शटर खुला हुआ है और ऊपर की तरफ दो पंखे लगे हुए हैं।

और यहां पर इसमें अ एक बोर्ड गेट दिख रहा है उसमें ऊपर की तरफ बैनर टंगा हुआ है।

ऊपर की तरफ इसमें लाल रंग से नारायणी सिंचाई व्यवस्थापन लिखा हुआ है।

यह एक घर है घर का सामने का गेट है जिसपे बहोत --

इसके इ रिक्शे के पास पे एक कार खड़ी हुई है कार के पीछे का हिस्सा दिख रहा है।

अ लगे हुए हैं ब और पाँवदान रखे हुए हैं और बम अलमारीयों में बहुत सारे अन्य सामान रखे हुए हैं कप रखे हुए हैं।

और लोग स्केटिंग कुछ लोग स्केटिंग कर रहें हैं यहाँ पर।

और लाल रंग के फूल हैं कुछ गहरे बैगनी रंग के फूल हैं पीले रंग के फू फूल हैं।

जिन्होंने हाथ में ग्लोब पृथ्वी ली हुई है।

यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसने शर्ट पहनी है पैंट पहना है और ग्लव्स लगाए हुए हैं हाथ में।

और पीछे की तरफ एक सीनरी टंगी है।

और खिड़कियां लगी हुई है दीवारों पर जिन पर शीशे लगे हुए हैं।

और नीचे की तरफ एक गेट है गेट खुला हुआ है कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है।

और खिड़कियाँ बनी हुई हैं खिड़कियों पर शीशें लगे हुए हैं।